अच्छा लग रहा है और हव देखने में भी स्वादिस्ट दिख रहा है।

पोल वोल भी गड़ा है बिजली विजली करंट वरेंट मत पकड़ ले लग रहा है।

जा के न देख उख के आना पड़ेगा कैसा जगह है और क्या है करके--

यह तो शायद कोई हॉस्टल वोस्टल का लग रहा है यार हूं।

हॉस्टल ही है न ये कोई घर वर बना है यहाँ पे बहुत सारे सारा ऊपर निचे ऐसे कर कर के--

जाके यहाँ देखना पड़ेगा और क्या-क्या मिलता है जो अच्छा भी लग रहा है हव यार--

ये तो ना कोई आदिवासी लोग का न कुछ वो कर रहे है ये लोग--

ये तो कार -वॉर का शोरूम टाइप का लग रहा है यार पार्ट्स -वाटस बनवाते होंगे देखो टायर -वायर निकला हैं।

बोहत अच्छा लग रहै ए अमन एक्सचेंज कर के लिखा भी है उसके टीशर्ट में--

जा के देखते है अब क्या क्या करना है और हओ बेहतरीन लग--

ओ कितने सारे लोग यहाँ बैठ वैठ के भी देख सकते है शायद क्रिकेट उरिकेट मैच वेच भी चल रहा होगा।